इस तस्‍वीर है मुकतलिब कलर के फूलस पड़े अ फूल पड़े है एक बाल्‍टी पड़ी है सापर में भी फूल पड़े हुए है सामने --

एक बैग पड़ा है काले रंग का एक छोटी सी अमारत अम्म फूलों से --

ये एक डांस सीखने की जगह है जहां काफी छोटे-छोटे बच्‍चें डांस सीख रहे हैं और इन्‍हें एक उस्‍ताद डांस --